मिट्टी दिखाई दे रही है। पौधे दिखाई दे रहे हैं। सामने लिखा हुआ है दावत पैलेस ।

घास दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है और काफी सारे लड़के दिख रहे हैं।